और कुछ बाउंड्री खींची हुई है।

और सामने धुंधला धुंधला और आसपास भी धुंधली धुंधली दीवार दिखाई दे रही है।

जो पिले कलर में हैं जिसमें प्रिंट चैंपियन प्लस का बोर्ड लगा है।

मंच में रथ अ रखी हुई है लाल--

गाड़ी चलाने वाली एजेंसी होती है इसमें बस ट्रक इत्यादि।

कुछ एक आदमी भी खड़ा हुआ है और इसमें लगता है चौराहा है।

और एक लगी हुई है या तो ये जग है जग में जूस रखा हुआ है कांच का--

दो पहिया वाहन खड़े हुए हैं और भी बाजू में एक आदमी खड़ा हुआ है और बाजू में और भी दुकान हैं और सामने से--

दीवाल में मैने बहोत से बड़े अ बड़ा बोर्ड लगा हुआ पेट्रोल पंप का--

सामने जो दिखाई दे रहा हैं वो एक इंजनियर या मिस्त्री हैं जो कुछ--

सुधार रहा है नीले कलर सी की कोई लाइन है पाइप लाइन है या अ लाइन है।